इस चित्र मे बहोत सारे बड़ेसे टायर रखे हुए है।

शर्ट पहनी हुए है। पेड़ दिख रहे है लड़के के हाथ दिख रहे है। उपर आसमान दिख रहा है। नीला आसमान दिख रहा है आधा आसमान सफ़ेद दिख रहा है।

इस चित्र मे एक बिल्डिंग दिख रही है पीली लाइटे दिख रही है।

इस चित्र मे एक आदमी दिख रहा है एक पीली डलीया दिख रही है डलिया मे मछलिया दिख रही है एक लड़की खाड़ी हुई है पानी दिखाई दे रहा है।

एक पंखा दिख रहा है। आयना दिख रहा है।

जिसके हाथ मे ढोलक दिख रहा है पीछे नीले कलर के पड़दे लगे हुए है हरे कलर की ख़ालिन दिखाई दे रही है।

मूर्ति पीले कलर की है।

इस चित्र में औरत आदमी दिखाई दे रही । एक --

हार डले हुए है। पीले हार डले हुए है। गुलाबी हार उपर लटक रहे है। मूर्ति के हाथ मे बनसि है।

इस चित्र मे एक आदमी दिखाई दे रहा है पत्थर दिखाई दे रहे है जिस पर कलर दिखाई दे रहा है।